खेत के ऊपर से बिजली की तारें क्रॉस हो रही हैं यहाँ दूर-दूर तक हरियाली दिख रही है।

इस दृश्य में एक पार्क दिखया है पार्क में बहुत बड़े -बड़े पेड़ उगाया गया है।